केबल भी डल्ली दिखाई दे रही लाइट की और बगल में एक दादाजी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

एक ब्लैक कलर की स्कूटी भी दिखाई दे रही है एक चैनल भी लगी हुए दिखाई दे रही है।

सामने उसके साथ एक रस्सा भी दिखाई दे रहा है बगल में बहुत सारे सरिए लगे दिखाई दे रहे--

यह पिक्चर एक मिट्टी के दुकान की है जहां पर मुझे मिट्टी से बने बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में दो फ्रिज़र रखें दिखाई दे रहे हैं जो व्हाइट कलर के--